खिड़कियां हैं वहां पे एक औरत खड़ी है जिसकी लाल कलर की ड्रेस है चद्दर है एक डस्टबिन है बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

कुछ स्लाइड पर खड़े है चद्दर है स्लाइड येलो रेड और स्काई ब्ल्यू कलर की है।

बोर्ड लगे हुए हैं बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं।

इस फोटो मे मुझे बहोत बड़े रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे है जिसमे लकड़ियो के चेयरस् है सोफे --

और इसकी ओर दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं चेयर्स पे एक--

गेट पे खड़ा है उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है गेट कांच का है और ऊपर फैन है ए_सी है।

और ये ऑरेंज कलर की बिल्डिंग से दोनों साइड पेड़ पौधे उगे हुए हैं बहोत सारी बिल्डिंग --

ऑरेंज और ब्लू कलर का गेट है बहोत सारे लोग है टॉयज है बच्चों के।

इस फोटो में मुझे एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की चेयर्स दिखाई दे रही है ब्लैक कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

जीसके बाहर एक गाड़ी रखी हुई है लोहे की चेयर पे कुछ लोग बैठे हुए एक आदमी खड़ा --

कुछ सामान नीचे पड़ा हुआ है और एक पिलर है जिसका लोहे का है वो इसका ऑरेंज कलर का है।

पेड़ हैं जिस पे ऑरेंज कलर के फूल है बाकी बाहर बहुत सारे घर है और बिजली के तार है।

लड़की चादर बिछी हुई है जिसमें दो अंदर दो लोग हैं।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

के पास बहोत सारे घर है बहोत सारे पत्थर है एक और पहाड़ी जिसमें बहोत सारे छोटे मो --